एक फ्रिजर रखा हुआ है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरे हुई रखी हुई हैं।

और यहां बिल्डिंग पूरी तरह से सफेद और रेड कलर से रंगी गई है।

यहाँ पे कुछ म पैकेट में रखे हुए हैं जो की येलो कुछ ब्लू कलर के पैकेट में है।